कोई नदी का एक डैम है। जिस पर रोलिंग है और डैम के नीचे सीमेंट का एक पत्थर रखा हुआ है। जिस पर लरका खड़ा है ।

मछली मंडी में बहुत सारे मछुआरें मछली काट कर ग्राहकों को दे रहे हैं।

गहूँ डउडी हो रहा है। यहाँ पर भूसा का ढेर लग गया है और गहूँ बोरा में भरा रहा है।

स्कूल में ग्रिल लगी हुई है ऊ छत व्हाइट कलर का है और दीवाल रेड कलर का --

पुराने जमाने की अम्बैसडर कार है और बगल में दो मंजिला इमारत है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और अपने-अपने काम से कुछ लोग जाते दिख रहे है।